जिसमे चारो तरफ से पेड़-पोधे तथा फिल्ड में प्रदर्शनी लगा हुआ है।

दो हजार पे टू व्हीलर रास्ते में खड़ा है।

इसमें एक फील्ड ये फील्ड है और इसके फील्ड के चारों और हरे-भरे पेड़-पोधे हैं।

ये एक रोडवेज बस है जिसमें एक व्यक्ति गेट के अंदर एंट्री कर रहा है।

और ये एक स्नान करने के लिए घाट बना हुआ है।